एक ईमारत भी दिख रहा है ईमारत का कलर पीला है कुछ बालकनी भी दिख रहे है नीचे फर्श दिखाई दे रहा है फर्श का कलर येलो --